ऊपर में बहुत सारे लाइट लगे हुए है।

यह एक दुकान का चित्र है जहां पर बहुत सारे कुर्सी लगी हुई है।

कुर्सी का कलर सफ़ेद और काला कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां काउंटर पर बहुत सारे मोबिल के डब्बे रखे हुए हैं।

यह एक पोस्ट ऑफिस का चित्र है।

दरवाजे का का घर कत्था कलर का है।

घर के निचले हिस्से में कुछ सीमेंट के बोरे और बास दिखाई दे रहे हैं।

घर के साइड में और कुछ नए बने हुए घर दिखाई दे रहे हैं।

और एक लड़का बैठा हुआ है उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई है।

एक आदमी पैड से फोटो खींच रहा है।

यहाँ पर दो कार भी खड़े दिखाई दे रहे है एक का रंग सफेद और एक का रंग लाल दिखाई दे रहा है।

सामने दो औरत दिखाई दे रही है जिसने रेड और सफेद कलर का साड़ी पहना हुआ है।

सामने एक आदमी ने सफेद कलर का गंजी पहना हुआ है।

सामने एक आदमी पार हो रहा है जिसने सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।

साइड में एक चेयर भी रखा हुआ है।

सामने कुछ फ्रॉक टंगे हुएं हैं।

यह एक रोड का चित्र है जहाँ पर दो ठो ऑटो खड़ा दिखाई दे रहा है एक का कलर हरा है और एक का कलर ब्लू है।

सभी पुस्तकों को एक काठ के बॉक्स में सजाया गया है।

यह एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है जिस पे बहुत सारे कलर की लाइट लगाए गए हैं।

बोड के साइड में एक फायर बिगेड भी रखा हुआ है। ऊपर सीलिंग पर एक फैन भी लगा हुआ है।

सामने दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे है।

सभी ने टोपी पहना हुआ है एक आदमी ने टोपी नहीं पहना हुआ है।

सामने बहुत सारे कंप्यूटर रखें हुए है हैं।

यह एक दुकान का चित्र है यहां पर बहुत सारे लहंगे साड़ी और कुर्ते रखे हुए हैं।

उसे फूलों से सजाया गया है और बहुत सारे बैलूम भी रखे है।